सफेद कलर की है और गेट लगा हुआ है। उसके ऊपर एक पोस्टर है जिसमें इंडियन बैंक लिखा है।

और सामने एक महिला बच्ची को गोदी में ली हुइ है और हल्की गेट --

सामने कुछ डेसबीन रखी हुई है बाहर की साइ ।

जो सफेद और ब्लू की चितकबर कपड़ा पहन रखा है और मुस्कुरा --

माना ऐसा लग रहा है कि बोहत पुराना है। आस-पास में बोहत सारे पेड़ पौधे हैं।

मुझे एक चित्र नज़र आ रही है। एक रूम है जो ऑरेंज कलर की दीवाल है।

मुझे एक चित्र नजर आ रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि ये बोहोत बड़ी शॉप है।

बोहोत सारे पेड़ पौधे हैं और उनकी पत्तियां हरी-भरी दिख रही है। नीचे की जमीन भी हरे रंग की नजर आ रही है।

और आसमान हुई है और आता-जाता कोई नजर नहीं आ रहा है।

मुझे एक इमेज नजर आ रही है सामने एक चापाकल है।

मुझे एक चित्र नजर आ रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि ये कोई रेस्टोरेंट है बहोत बड़ी।